एक बच्चे ने सर पर पगड़ी पहनी हुई है।

शोरूम के अंदर बड़े-बड़े डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

साइड में हीरो के फोटो लगे हुए हैं वहां बच्चों के और लड़कों के कपड़े मिलते हैं।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है एक टेक ट्रैक्टर --

यहां हमे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है।

वहीं एक औरत अपनी बेटी को बैग में से कुछ निकाल कर दे रही है।

घरों पर लोग चढ़कर यह सब चीज देख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रही है कॉलोनी ।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है एक खेत--

नीचे लिखा है औरंगाबाद मध्ये आपले शहर से स्वागत--

पीछे हमें समुद्र दिखाई दे रहा है।

जो कि लकड़ी की अलमारी में अलग-अलग जमाया गया हुआ है।

यहां पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है बच्चों ने सफेद और गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

चर्च के बाहर हमें कुछ लोग और बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

चर्च के पास एक टेंट बना हुआ है जहां बच्चों के लिए कुछ दावत रखी गई है।

एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने नीली शर्ट पहनी हुई है।

यहां पर हमें फल दिख रहे हैं यह छट पूजा है यहां मिट्टी की एक गुंबत जैसी चीज बनाई जाती है जिसकी यह लोग पूजा करते हैं।

इस तस्वीर में हमें एक चर्च दिखाई दे रहा है।

इसमें हमें हरी और लाल ईंटें दिखाई दे रही हैं।

यहां हमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे हमें नीले रंग की गाड़ी भी नजर आ रही है।

जिसमें काफी सारे रंग-बिरंगे फूल नजर आ रहे हैं।

कुछ पत्थर नजर आ रहे हैं जिनमें कुछ लिखावट है अलमारी को ताले से बंद किया गया है।

इस तस्वीर में हमें साड़ी दिखाई जा रही है।

का न्यूज़पेपर बिछा है और उसमें हमें अंगूर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

सड़क पर हमें दो गाय जाती हुई नजर आ रही हैं।